पीछे एक बिल्डिंग नजर आ रही है बिल्डिंग काफी बड़ी दिखाई दे रही है पीछे कुछ खम्भे नजर आ रहे है पीछे कुछ पेड़ दिखाई दे रहा है पेड़ काफी बड़े दिखाई दे रहा है यहां पे बिल्डिंग का कलर सफ़ेद दिखाई दे रहा है।

दिखाई दे रहा है रेस्टोरेंट काफी बड़ा दिखाई दे रहा है रेस्टोरेंट के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है बोर्ड पर न्यू मोनिका रेस्टोरेंट एवं भोजनालय लिखा हुआ है यहा पे काफी सारे लोग दिखाई दे रहे है।

पीछे कुछ बाउन्ड्री नजर आ रही है पीछे कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है पेड़ काफी हरे भरे दिखाई दे रहे है पेड़ काफी लंबे दिखाई दे रहे है।

बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग काफी बड़ी दिखाई दे रही है बिल्डिंग को काफी अचे से डिजाइन किया गया है।

यहाँ पर एक बोर्ड दिखाई दे रहा है बोर्ड पर आई.सी.ऐ.आर. लिखा हुआ है।

दिखाई दे रही है रोड काफी बड़ी दिखाई दे रही है रोड के बाजु मे काफी ज्यादा खुला स्पेस दिखाई दे रहा है।

दुकान दिखाई दे रही है दुकान काफी बड़ी दिखाई दे रही है दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है बोर्ड का कलर सफ़ेद दिखाई दे रहा है बोर्ड पर श्री बालाजी ग्लास लिखा हुआ है यहां पर कुछ बाइक दिखाई दे रही है।

बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग काफी अच्छी दिखाई दे रही है बिल्डिंग को काफी अच्छे से डिज़ाइन किया है बिल्डिंग के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है बोर्ड पर एलबीएस कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी --